इस इमेज में हम देख पा रहे है बहुत बड़ा स्कूल है और स्कूल में बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ एजुकेशन लेने के लिए आए हैं।

और यहाँ बहूत सारे बाइक खड़े है स्कूल के जो कलर जो है हरे रंग में पुताया हुआ है और आसमान में नीली-नीली--

इस इमेज में हम देख पा रहे हैं यहां पे एक सफेद कलर का बदक है।

और उसके जो हैं सर पर जो हैं एक कलगी है सफ़ेद में लाल में और यहाँ यह जो चारा--

इस दवाखाना में दवाई रखाया हुआ है कुछ फोटो --

हम देख पा रहे हैं यहां पे एक बहुत बड़ा तालाब है और तालाब के जस्ट पार --

अ छोटा-छोटा घर दिखाई दे रहा है मंदिर दिखाई दे रहा है और उसके आसपास पेड़ पौधे हैं।

यह इमेज जो है एक बुक का है और यहां बहुत सारे बुक --

ज्ञान प्राप्त यहाँ से हम करते है बुक जो है बहुत से राजनीतिक का हो सकता है यहाँ पे --

ये इमेज हम देख पा रहै है यह जो है एक सड़क है सड़क सड़क में कुछ व्यक्ति यहाँ पे चल रहै पैदल और हुए व्यक्ति छोटे से --

बाद जो है एक पेड़ है हरा-हरा प दिखाई दे रहा है यहाँ पे--

यह जो हम इमेज में देख रहे हैं कपड़े का शॉप है और इस कपड़े के शॉप में --

और चेयर भी है स्टाइलिश चेयर है यहाँ पे इस कपडे की शॉप में --

हम देख पा रहै है एक बहोत बड़ा गुफा --

बना हुआ है बिल्डिंग और यह बिल्डिंग के सामने सड़क है रोड में --

हम देख पा रहे हैं यहां से पांच फ्लोर की बिल्डिंग है और बिल्डिंग बहुत ही खूबसूरत कलाकारी के साथ ये बिल्डिंग को बनाया गया है खिड़कियों में एक --

यहाँ मिरर फिट किया गया है और वाइट कलर में पुरे पुताई--

इस पौधों को पानी देने के लिए यहाँ पे पैप है पैप के माध्यम से पानी डाला जाता --

इसमें जो है हम देख पा रहे है एल_जी कंपनी का जो है यहाँ मोबाइल सें शॉप होगा --

ये हम देख पा रहे है इमेज में एक नदी है और नदी में बहुत सारे व्यक्ति जो है स्नान कर रहे है और वहाँ पे एक डोंगा है।

और बहुत ही सुन्दर इस मुरली --

हम देख पा रहे हैं इस इमेज में या कोई रेलवे स्टेशन हो।

का है और यहाँ जो है एयरटेल पेमेंट बैंक भी किया जाता है यहाँ कम्प्यूटर सेंटर में--

और हमे दिखाई दे रहा है बहोत सारे व्यक्ति जो है इस मार्किट में सब्जी खरीदने के लिए आये --

और मिरर फिट किया हुआ है खिड़कियों में नीले नीले कलर का यहाँ गार्डिंग किया हुआ है इस घर के पास पेड़-पौधे हरा-भरे--

क्योंकि यह जो है नृत्य करने के लिए बहुत सारी लड़की ये --

यहां सिलिंग पंखा लगे हुए दो।

हम देख पा रहे है यहाँ पे सिनेमा हॉल है और जैसे सिनेमा में कोई पिक्चर शूटिंग होता है।

हम देख पा रहे हैं एक दुकान है दूध का।

इस जंगल में बोरे हरे-भरे जहां घांस है और घांस में जो है एन्जॉय कर रहै है मस्ती कर रहै है जानवर --